यह सीन महात्मा बुद्ध के पर्यटन स्थल का मालूम पड़ता है। यहाँ पर बहुत से पेड़ है। कुछ फुलवारी भी है। कुछ फूल के पेड़ और कुछ गमले रखे हुए हैं जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं।

आसपास हरे भरे पेड़ भी हैं चर्च बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है।

यह फोटो एक बुक डिपो के बाहर का है। इस बुक डिपो का नाम श्री हिंगलाज बुक डिपो है। यहाँ पे स्पोर्ट स्टेशनरी फोटोकॉपी तथा बुक वगेरा मिलती --

यहां पर जियो का एक पोस्टर लगा हुआ है। जहां पर लिखा हुआ है गंगारामपुर मुंसिपालती । इसका अडड्रेस है गंगारामपुर दीदाल्पुर --

यहाँ पर एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है। वह अपनी गली में झाड़ू लगा रहा हैं जहाँ पर थोड़ा सा पानी भी है।

यहाँ पर एक ब्लैक कलर का बस दिखाई दे रहा है। उस बस पर बांदीपुर टाइगर रिसर्व लिखा हुआ है।

यह फोटो एक योगा क्लासेज का मालूम पड़ता है। यहाँ पर सभी गा लोग सभी गर्ल्स बिछा कर --

इस फ़ोटो को देखकर यह एक गुफा टाइप की लग रही है वह बंदा नीचे को झुका हुआ है उसने चश्मा भी पहना हुआ है ब्लैक कलर का लोअर तथा ग्रे कलर की टी-शर्ट पहनी है उसका दोनों हाथ ज़मीन पे है तथा एक पैर अंदर तथा एक पैर बाहर --

यह म्म यहाँ पर एक खंडहर सा पड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग थैला लिए हुए खड़े हैं कुछ लेडिज तथा कुछ जेन्ट । शायद से यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है।